सामने एक थाली रखी हुई जो की काले कलर की है उसमे कुछ खाने वाला पदार्थ है जिसके ऊपर से सफ़ेद कलर का सॉस डाला हुआ है और कुछ सैलेड रखे हुए हैं जो की लाल कलर के हैं। बगल में एक काले कलर की कटोरी है उसमे एक स्टील का चम्मच डला हुआ है।

और सामने एक बहोत बड़ा मकान है जिसमें हरे-भरे पेंट हुए हैं और अगल-बगल बहोत बड़े-बड़े पेड़ पौधे --

एक बहुत बड़ा हॉल है। हॉल में एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है और वह गले में फूल की माला पहना हुआ है।

ये एक मैदान है मैदान में नीचे हरे कलर की मैट बिछी हुई हैं और लाल कलर के खम्बे लगे हुए जिनके ऊपर मिटटी के बर्तन रखे हुए हैं जिनमे लाल कलर की मोमबत्तियाँ जल रही हैं।

और बगल में बहोत सारी किताबें रखी हुई हैं जोकि सभी स्टैंड में लगी हुई हैं जोकि पंक्ति में सभी लगी हुई हैं।